मुझे इस फोटो पर नदी दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर कुछ सीढ़ी दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर ग्रीन कलर का मैदान दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर नदी दिखाई दे रही है।

शिवम मोटर गोरेज दिखाई दे रही है मुझे इस फोटो पर जेडिल--

कुछ पर्दे भी दिखाई दे रहें हैं।

मुझे इस फोटो पर कुछ अलग--

मुझे इस फोटो पर खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर एक पोस्टर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर मिट्टी दिखाई--